इस फोटो मे मुझे एक गाड़ी दिख रही है जो सफेद कलर की है।

लेफ्ट साइड में एक बैठने की जगह है जिस पर पिंक कपड़ा डाला हुआ है और राइट साइड में एक बैठने की जगह है जिस पर येलो कपड़ा डाला हुआ है।

उस मंडप में हमें कुछ लाइट्स येलो कलर की लगी दिखी है।

उसके आगे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है और जो सफेद ग्रे कलर की है।

यहां पर छत डल रही है यहां पे नीचे सरियों की एक ग्रिड बना के रखी हुई है।

और ऊपर सब लोग सीमेंट डाल रहे है।

इस फोटो में हमें बीच में एक कंप्यूटर दिख रहा है जिसका मॉनिटर खुला हुआ है।

इसके ऊपर हमें सीलिंग दिख रही है जो सफेद कलर की है।

जो रोड है वो कर्व करते हुए एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा है।

इस बिल्डिंग के आगे खुला सा ओपन ग्राउंड है जहां पर घास है।

इस फोटो में हमे एक बिल्डिंग दिख रही है जो दो फ्लोर्स की है जिस पर खोडियार भवन लिखा दिख रहा है।

ये एक शादी का मंडप हमें दिख रहा है जिसको फूलों से डेकोरेट किया गया है।

और लेफ्ट साइड में कुछ ब्लू कलर के कार्टूंस और उनके पीछे सफेद डब्बे रखे हुए हैं।

जहां पे इसकी ऊपर की जो रूफ है वो ब्लू कलर की है।

आगे एक रास्ता है जिस पर एक औरत पिंक सूट और व्हाइट दुपट्टे में चल रही हैं।

और उसके आगे हमें बहुत सारे व्हीकल्स जैसे स्कूटी और बाइक खड़ी हुई दिख रही है।

जिस पर से ब्लैक पंखे लटके हुए हैं और इसके आसपास हरे भरे पेड़ हैं।

इनके ऊपर टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं।

इस फोटो में पीछे हमें पेड़ दिखाएं गए हैं आम के --

इसके नीचे डेकोरेशन की हुई है ब्लू और व्हाइट बैलून के साथ--

उसके आगे हमें पांच लोग देख रहे हैं जो पैंट शर्ट पहने हुए हैं।

पीछे हमें एक गाड़ी दिख रही है जिसके ऊपर ग्रे कलर के सरिये रखे हुएं हैं।

इस फोटो में हमें एक राशन की दुकान दिखाई गई है।

ये एक जिम की फोटो है जहां पे हमें बहोत सारे वेट्स रखे हुए दिख रहे हैं जो अलग अलग वेट के हैं। वेट

हमें जो जमीन है वो ग्रे कलर की दिखाई हुई है और राइट साइड में एक मिरर भी दिखाया हुआ।

और जिसकी बहोत सारी खिड़कियां हमें दिख रही हैं जिनके आगे ऐ_सी आउटलेट्स लगे हुए हैं।

इस फोटो में हमें आगे एल_ई_डी स्क्रीन का डेकोरेशन दिख रहा है जो ग्रीन और रेड कलर का है।

पुराने चर्च टाइल से बना हुआ है जो येल्लो और व्हाइट कलर का है।

इस चर्च के आगे हमें कुछ लोग चलते हुए दिख सकते हैं।

इस रूम के जो टाइल्स है वो वाइट और ब्राउन कलर के है।

यहां के आस पास हमें दीवारे दिख रही हैं जो येलो कलर की हैं।

हमें राइट साइड में एक रास्ता इस बिल्डिंग तक जाता हुआ दिख रहा है।

जिसके नीचे खाने की प्रिपरेशनस हो रही हैं जहां पर प्लेट्स लगी हुई हैं।

इस फोटो में हमें एक बोर्ड दिखाया गया है जिस पर जि_एम_आर_एस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोत्री वलसाड लिखा हुआ है।

उसके आस पास थोड़े बहुत पत्थर है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

में पेड़ भी दिखाई हुए है। पीछे जो हरे-भरे हैं।

और लोगों ने ब्लू ग्रीन वाइट और ब्लैक कपड़े पहने है।

इस फोटो में हमें एक टेबल दिख रही है जिसपे कैचअप नैपकिन साल्ट एंड पेपर रखा रखा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक बोर्ड दिखाया हुआ है। जिस पर बजाज फिनसर्व ई_एम_आई फाइनेंस अवेलेबल हियर --

उसके आगे जमीन है जो ब्राउन कलर की है।

जिसके नीचे हमे बहोत सारे नमकीन दिख रहे है।

ये काफी ऊंचा वॉटरफॉल है जो ऊंचाई से नीचे गिर रहा है।

राइट साइड में हमें कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं जो व्हाइट टी शर्ट और पैंट पहने हुए हैं।